यहां पर बहुत सारी गाड़ियां है मोटरसाइकिल है बीच में से सड़क निकल रही है।

और पास में इधर साइड और दोनों साइड बहोत ही बड़े बड़े पेड़ लगे हुए--

पेड़ पौधे पौधों के बीच में छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं घास फूस लगी हुई है।

पिछे एक खिड़की लगी हुई है उधर साइड में एक और दरवाजा लगा हुआ है दरवाजे के पास इधर लोहे की कुर्सियां पड़ी है।